ऊपर लच्छे भी लगे हुए हैं एक आदमी दिखाई दे रहा है चप्पल पहन रखी है एक टेबल दिखाई दे रही हैं और वहां पर आदमी दिखाई दे रहे --

पर एक ए_सी भी लगी हुई है। पर्दे लगे हुए हैं और इनवर्टर भी लगा हुआ है एक--

दो तीन नाये है लगी हुए हैं और फर्नीचर भी लगे हुए हैं और बहुत सारे कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं और लाइटा भी लगी हुई हैं और --

ये एक दुकान दिखाई दे रही हैं सड़ियों की--

बने हुए हैं और बनाई हुई हैं।

एक आदमी नजर आ रहे हैं और ये पैसे करें दो आदमी उधर भी नजर आ रहे ऊपर सीढ़ी लगी हुई है।

कुछ कूलर भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर शीशा भी लगे हुए है और एक लाइट लगी है एक ट्यूबलाइट लगी हुई है और दरवाजा बंद हो रखा --

बैंक की दुकान दिखाई दे रही ऊपर बहुत सारे बैंके दिखाई दे रहे हैं बैंक ही बैंक पड़ी हैं चारों तरफ।